और बहुत सारे --

को पकड़ करके बहुत --

लगता है कोई मूर्ति भी है फूल भी लगा हुआ है व्हाइट कलर का।

गाड़ी रेड कलर का भी है बहुत सारी अनेक चीज देखने को मिल रही है।

फैन भी लगा हुआ है व्हाइट कलर का टाइल्स उल भी लगा हुआ है लगता है बहुत अच्छा बेंच है।

यह लगता है जहाज है जहाज के अ ऊपर भी बहुत सारे मकान भी है।

यह मेला लगा हुआ है यहां पर।

पारक भी बनाया हुआ है।

स्कूल भी है बिल्डिंग भी है हर एक पेड़-पौध भी है